इस तस्वीर में एक लड़का नाव पर खरा है।

वह लाल और काले रंग की चेक वाले शर्ट पहेना है।

मुझे हरी भरी पेड़ और सूखी जमीन नजर आ रही है।

दिन का मौसम साफ और धूप वाला है।

बस का दरवाजा खुला है कुछ यात्री उसमें चढ़ रहे हैं।

सड़क पर लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे कुछ इमारतें और बिजली के खंभे भी नजर आ रहें --

फब्बारे के बीच में धातु का सजावटी ढांचा लगा हुआ है।

पीछे लोग टहलते घूमते नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक रेलवे स्टेशन की है।

सामने की तरफ एक फुट ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है।

प्लेटफार्म पर कुछ कुत्ते लेटे हुए हैं।

यह तस्वीर एक मंदिर के पास की है।

पीले और लाल रंग का सीढ़ी नुमा ढांचा बना हुआ है।

सामने छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है।

एक बच्चा एक युवक ढांचे के पास खड़े हैं।

बच्चे जमीन पर गोल आकार में रंग भरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक पार्क का दृश्य है।

पार्क में कई बच्चे खेल रहे हैं।

चारों ओर हरियाली और खुला वातावरण है।

कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे है कुछ लोग इधर उधर घूम रहे--

यह तस्वीर एक संस्कृति या धार्मिक जुलूस की है।

कमरे में कई वाशिंग मशीन और ड्रायर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं।

और इसपर हल्के रंग की टाइल्से लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक हरे मैदान के पास बने एक मंच की है।

मंच पर हरी कालीन बिछी हुई है।

यह तस्वीर दुर्गा पूजा पंडाल की है।

मंच पर देवी दुर्गा और अन्य देवताओं की भव्य मूर्ति सजी हुई है।

पीछे सुनहरे कमल के आकार की सजावट मंच की शोभा बढ़ा रही है।

यह तस्वीर एक सब्जी मंडी की है।

गाजर टमाटर धनिया और बैगन साफ सुथरे ढंग से रखे हुए हैं।

यह तस्वीर एक मंच पे खड़े दो लोगों की है।

सामने फर्श पर स्पीकर हरिकालीन बिछी हुई है।

यह तस्वीर एक कपड़ों की दुकान के अंदर की है।

दुकान में महिला व बच्चों के कपड़े सलीके से टंगे हुए हैं।

ऊपर की तरफ रंग बिरंगे बोर्ड पर दुकान का नाम लिखा हुआ है।

ऊपरी शेल्फ मे लड्डू बर्फी और अन्य मिठाइयां रखी है।

नीचे की शेल्फ में कई तरह के नमकीन है।

सभी आइटम ट्रे में सजे हुए हैं।

अंदर लाल सफेद और नीले रंग की बरी बरी बोतलें रखी है।

साइड में पोस्टर पर अलग अलग स्टांप और इंक तस्वीरे लगी --

यह तस्वीर एक आइसक्रीम डीश की है।

इनमें तीन फ्लेवर की आइस क्रीम वनीला स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल रखी है।

ऊपर से टूटी फ्रूटी किसमिस बादाम चेरी से सजावट की गई है।

आइसक्रीम एक लंबी कांच की प्लेट में परोसी गई है।

यह तस्वीर एक खिलौनो की दुकान की है।

अलमारियों में तरह तरह की गुड़िया सजी हैं।

झील के किनारे एक व्यक्ति पत्थर पर बैठकर पानी की ओर देख रहा है।

आसमान में बादल छाए हुए है जिससे मौसम सुहाना लग रहा है।

इस तस्वीर में हरी मिर्ची जमीन पर फैली हुई दिख रही है।

यह दृश्य किसी सब्जी मंडी या बाजार का लगता है।

पास में हरे भरे पेर और घास है।

यह तस्वीर एक फ्रीजर के अंदर की है।

पास में आइसक्रीम और अन्य मीठी चीजे रखी हैं।

ऊपर की कतार में चार अलग अलग डिजाइन की कोट है।

नीचे पैक किए हुए गर्म कपड़े रखे हुए हैं।

तस्वीर में एक व्यक्ति सूट और टाइ पहने खड़ा है।

पीछे गुलाबी और लाल फूलों से सजी दो दिल की आकृतियां हैं।

दोनो ओर सुनारे सजावटी स्टैंड रखे हुएं हैं।

इस स्थान को गुलाबी पर्दों और लाइटों से सजाया गया है।

यह तस्वीर एक किताबों की दुकान तेजा बुक स्टॉल की है।

दुकान के बाहर कई पोस्टर और पत्रिकाएं लटकी हुई हैं।

एक आदमी काउंटर पर खरा हो कर कुछ खरीद रहा है।

दुकान रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर लगती है।

यह तस्वीर एक ऊंचे ध्वज स्थल पर लहराते भारतीय तिरंगे की है।

महिलाएं रसोई में सब्जियां काट रही है।

छे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं।

यह किसी आयोजन की तैयारी है।

यह तस्वीर एक नदी किनारे या घाट की है।

एक व्यक्ति मास्क पहनकर खड़ा है और किसी दिशा की ओर इशारा कर रहा है।

पीछे पीले और हरे रंग की नावे खड़ी हुई है।

प्रतिमा में काले और सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है।

बुद्ध जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं।

वस्त्र पर मोतियों और डिजाइन की सजावट है।

ईंटों की दीवारें आदि बनी हुई है और कुछ जगहों पर सीमेंट का काम चल रहा --

साइट पर सीमेंट ईंटें और अन्य निर्माण सामग्री बिखरी हुई है।

यह तस्वीर सड़क किनारे बने एक कॉफी स्टॉल की है।

स्टॉल के पीछे एक बोर्ड पर दुकान का नाम और पता लिखा हुआ है।

टेबल पर गुलाबी रंग के कुछ बोतले और बिस्कुट के जार रखे हुए हैं।

यह तस्वीर एक नियंत्रण कक्ष की है।

कंप्यूटर स्क्रीन पर मशीनों के डाटा और ग्राफ दिख रहे हैं।

पीछे एक व्यक्ति खड़ा है और काम कर रहा है।

यह तस्वीर एक सुंदर तरीके से सजाए गए शादी या समारोह के प्रवेश द्वार की है।

हॉल मे भी रोशनी और पर्दो से सजावट की--

मंदिर तक पहुंचने के लिए लंबी सीढ़ियां बनाई है।

दो व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मंदिर की नकाशी और गुंबद बहुत आकर्षक है।

कुछ बच्चे एक साथ खडे़ हैं और कैमरे की ओर देख रहे हैं।

सामने मेज पर पैकेट में बिस्कुट रखे हुए हैं।

एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है।

यह तस्वीर सूर्यास्त के समय की है।

दो लोग नाव के आगे खड़े होकर सूरज के आगे हाथ बढ़ा रहें --

महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ा पहन कर पूजा में बैठी है।

चारों ओर गन्ने की डंडियां और केले के घोंगे रखे हैं।

यह तस्वीर एक लाल रंग के स्मारक या स्तंभ की है।

आस पास हरी भरी झाड़ियां पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्मारक के चारों ओर लोहे की जाली और पत्थर का फाटक है।

यह तस्वीर एक गुफा के अंदर की है।

चारों तरफ प्रकृतिक पत्थरों की दीवारें और मिट्टी का फर्श दिखाई दे रहा है।

दुकान को बालकनी पर एक व्यक्ति खड़ा है दुकान के सामने रंग बिरंगे इ रिक्शा खड़ा है।

यह तस्वीर एक व्यस्त सड़क की हैं।

सड़क पर ऑटो बाइक कार साइकिल रिक्शा चलते हुए नजर आ रहे हैं।

सड़क के किनारे दुकाने और लोग नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर एक नदी पर बने पूल की है।

मजबूत सीमेंट के खंभों पर टिका है।

पास मे हरी झाड़ियां और दूर पेड़ नज़र आ रहे है।

पानी मे फूल का हल्का सा प्रतिबिम्ब नज़र आ रहे हैं।

यह एक घाट का दृश्य है।

सामने सीढ़ियां नदी की ओर उतर रही है।

पीछे पेड़ और कुछ इमारतें दिखाई दे रही है।

बीच में पानी का छोटा सा तालाब है।

यह तस्वीर एक पुरानी लाइब्रेरी की है।

दीवारों पर छोटे छोटे खाने बनी है जिसमें किताबें रखी है।

मेज पर लोग बैठकर अखबार पढ़ रहे है।

यह तस्वीर एक जिम के अंदर ली गई है।

व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होकर मोबाइल से फोटो ले रहा है।

इसने नीले रंग की टी शर्ट और काले रंग की पैंट पहनी हुई है।

यह तस्वीर एक कपड़ों की दुकान के शेल्फ की है।

सेल्फ में अलग-अलग ब्रांड के अंडरगारमेंट्स और बनियान रखे हुए हैं।

दाएँ ओर दीवार पर एक मॉडल का पोस्टर लगा हुआ।

कांच की अलमारीयो में प्राचीन मूर्ति और बर्तन रखे है।

दीवार पर एक पुराना नक्शा या फोटो लगा है।

दूसरी ओर विभिन्न औजार और हथियार प्रदर्शित है।

यह तस्वीर एक फल के ठेले की है।

ठेले पर पीले रंग के नींबू हरे तरबूज और लाल सेब सजे हुए हैं।

यह तस्वीर एक शांत झील की है।

चारों ओर घने हरे पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं।

झील का पानी साफ और स्थिर दिखाई दे रहा है।

दूर किनारे पर कुछ इमारतें और मंदिर जैसा ढांचे नजर आ रहे --

पे अखबार कैंची कैलकुलेटर रखा है एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है और तस्वीर के सामने की ओर बैठा--

यह तस्वीर एक स्कूल के गलियारो की है।

मेज पर रंगीन कागज कैंची अन्य सामग्री रखी हुई है।

कुछ शिक्षक और महिलाएं खड़े होकर बच्चों के काम को देख रहे हैं।

उपर लाल पिले और काले रंग के गुब्बारे लटके हैं।

लोग कुर्सियां पर बैठकर बाते कर रहे है।

स्टेज के पास कुछ लोग खड़े हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं।

बीच में एक सीढ़ी रखी है।

कान के अंदर एक व्यक्ति काउंटर पर खरा होकर कुछ देख रहा है।

अधिकतर लोग रंग बिरंगे कपड़े और गर्म शॉल पहने हुए हैं।

लगता है कि यह किसी सरकारी कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र के बाहर का दृश्य --

यह तस्वीर स्कूल के मैदान कि है जहां चार छात्राएं खड़ी है।

चित्र में झोपड़ियां पेर पहाड़ और नीली नदी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे स्कूल की इमारत खेल का मैदान नजर आ रहा है।

यहां लाल रंग की कुर्सियां और लकड़ी के विभाजन वाली टेबले लगी हुई है।